पोस्तर में एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा --

नदी के ऊपर एक ब्रिज है।

स्टूडियो के अंदर एक रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन भी है।

अंबु ब्रिज के ऊपर बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

और छोटा छोटा बहोत सारा लाइट्स भी जला हुआ दिखाई दे रहा --

स्टैचू के आगे बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहा है।

रास्ते में एक जानवर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे पोस्टर भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहोत सारा पेर पोधै भी दिखाई दे रहा है।

दूर में पहाड़ भी दिखाई दे रहे --

और पिंक टी शर्ट पे नाओया दिखाई दे रहे --

यहां पे दो बिस्तर भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक सेंट्रल टेबल भी दिखाई दे रहा है।

और साइड में बहोत सारा पेर पौधा भी दिख दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहोत सारा फ्लावर पॉट्स भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक छोटा सा नदी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में मुझे प्लास्टिक दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक नदी दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो लोग भी काम करते हुए नजर आ रहा है।

मंदिर के आसपास बहोत सारा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

एक बस का रंग लाल है और दूसरा बस का ब्लू ।

इस पिक्चर में मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है।

दूर में घर भी दिखाई दे रहा है।

दूर में बहोत बड़ा करंट का पुल भी दिखाई दे रहा --

पत्थर से बनाया हुआ वाल्स भी दिखाई दे रहा है।

ऑफिस में कुछ लोग बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

और घर के अंदर बहुत सारा लाइट जला हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान में स्कूल बैग्स भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।